यह एक ग्राउंड की तस्वीर है जहाँ पर बहुत सारी घास उगी हुई है यह घास को बहुत अच्छे से मेंटेन कर के रखा गया है।

यहाँ पर एक लड़का और एक औरत जो फोटो खिंचवा रहे है जिन्हों ने हाथ जोड़ कर रखे हुए है यहाँ पीछे में दो दरवाजे है उसके ऊपर परदे लगे हुए हैं।

यहाँ और छोटा सा गेट बना हुआ है जहाँ एक आदमी सफ़ेद रंग के कपडे पेहेन के खड़ा हुआ है यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है उसने हरी रंग की टी शर्ट पहनी हुई हैं।

इसके अन्दर चावल और कुछ चीज़ दिख रही है यहाँ पर प्लेट वाइ कलर की है और यहाँ पे चार प्लेट रखी हुई है इस टेबल के ऊपर पानी रखा हुआ है और पीछे कोई इंसान बैठा हुआ है।

यहाँ पर पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए है और यहा पर एक टेरेस में आने के लिए गेट बना हुआ है यहाँ पर तीन पानी की टंकीया भी लगी हुई हैं।

यहाँ पर डंबल्स रखे है और कुछ वेइट्स रखे है और यहाँ पर एक कार्पेट डाला हुआ है जोहरे कलर का है और एक तरफ फ्लोरिंग हो राखी है जो की ब्लैक कलर से बनाई गई हैं।

यहाँ पर येलो कलर से कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर बहुत सी गाड़िया खड़ी है यहाँ पे बहुत सी भीड़ भी लगी हुआ है यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ भी लगा हैं।

यहाँ एक बुक स्टाल की तस्वीर है यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है वह एक बुक खरीद रहा है और यहाँ पर एक औरत दुकान में बुक बेच रही हैं।

यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पोस्टर भी लगे हुए है यहाँ एक डस्टबिन भी रखा हुआ है यहाँ पर पीछे एक अलग दुकान भी बनी हुई हैं।

यहाँ एक नाइ की दूकान है जहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है वह बाल कटवा रहा है उसने नीले रंग का का कपडा बाँध कर रखा हुआ हैं।

उसके आस पास एक आदमी बाल काट रहा है यह दुकान हरे रंग से पेंट करी हुई है यहाँ पीछे में बड़ी सी टी_वी भी लगी हुई है यहाँ पर बहुत अच्छी लाइट लगाई गई हैं।

यह एक नदी की तस्वीर है यहाँ बोट के ऊपर एक आदमी और औरत खड़े हुए है यह बोट नीले कलर की हैं।

यहाँ पर हरी मिर्ची भी राखी हुई है जो की बहुत अच्छी दिख रही हैं।

और यहाँ पे इसे बहुत अच्छे से फूलों और मालाओ से सजाया गया यहाँ पर बहुत सारे लोग आये हुए है यहाँ पीछे में एक विंडमिल लगी हुई है जो की बहुत बड़ी लगी हुई है और यह एक मोहल्ले की तस्वीर हैं।

यह एक जिम की तस्वीर है यहाँ पे बहुत सरे लोग एक्सेरसाइज कर रहे है यहाँ पर कई लोग निचे ऊपर उठक बैठक लगा रहे हैं।